हमें इस पिक्चर में यहाँ पेड़ है और दो पे एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं ताड़ का पेड़ है ऊपर में दीवाल है अगल-बगल यहाँ व्हाइट कल कलर का थोड़ा उम्म ब्लैक में मिट्टी है पार्क है ।

इस तस्वीर में हमे मार इस तस्वीर में हमे मार्केट दिखाई दे रहा है जहाँ रेड कलर का एक दुकान है जो पूरा रेड कलर में पेंटिंग हो रखा है उसके बगल में एक दुकान है जो सफेद थोड़ा पुराना लग रहा है देखने में उसके बाद यहाँ पे फूल है।